यह एक जनरल स्टोर का दृश्य है अंदर बहोत सारे जनरल स्टोर में समान पड़े हैं।

दोनों बैठे हुए हैं अ बोड के आगे दु--

सामने चित्र में राम और सीता की तस्वीर बनी हुईं है जिसकी चारों तरफ दिए लगा रहे हैं।

इस पिक्चर में किसी अह का क्लॉथिंग शॉप है मॉल है।

तो पेड़ लगे हुए हैं बेंच लगी हुई है आसपास में कोई नहीं दिख रहा है।

और पास में जो बॉक्सेस बने हुए हैं शोकेस बना हुआ है उसमें सारे स्क्रू और समान पड़े हुए दिख --

और बाहर सामान पड़ा है शॉप की एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा चेयर --